और इसके आगे कुछ बही की पुस्तकें रखी हुई है एवं कुछ अलमारियां यहां पर बनाई हुई है कि जिसमें --

डंडा गढ़ा हुआ है लोहे का और उसमें एक गुलाबी कलर का झंडा लगाया हुआ है।

और यहां पर एक बस रोड पे जा रही है।

यहां पर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

और इसके आगे कुछ पेड़ लगाए हुए हैं।

और इसके पास में एक पार्क बना हुआ है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं और इस पार्क के चारों और रेलिंग लगाई हुई है।

गाडी खड़ी हुई है और पीछे की ओर भी कुछ गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई है इसमें बोर्ड लगाया हुआ है।

हैंडसम नाम का बोर्ड है और यह मेंस पार्लर की--